और इस बिल्डिंग के आस -पास काफी लोग है और बिल्डिंग के साइड में काफ़ी सारी स्कूटी और बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर एक कारखाना है ये एक छोटा- सा कारखाना है यहाँ पर धागों से कपड़ों को बुना जाता है यहाँ पर कुछ मशीनें भी हेंगी।

--और यहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे हैंगे यहाँ पर लकड़ी से और लोहे से इसको मिलाकर मशीन बनी हुई है और कपड़े बुनने का--

कार रेड कलर की हैगी कार पूरी पैक हैगी इसके ऊपर वाइट कलर की पन्नी चढ़ी हैगी ।

बीच में तिरंगे झंडे की ए डोरीयां बनाई गई होंगी नीचे रंगोली बनाई जा रही है तिरंगे की रंगोली बनाई --

यहाँ पर काफी सारी लकड़ी रखी हुई है सा रोड के साइड मे कुछ बाइक भी रखी हुई है और दुकानों के ऊपर दुकानों के पोस्टर लगे हुए होंगे कुछ लोग पैदल चल रहे है।

इसके बहार काफी लोग लाइन बना के खड़े हेंगे दीवारों का कलर क्रीम कलर का हैगा और खिड़कियां लगी हुई हैं इसमें काफी लोग हैं यहाँ पर--